अंदर की तरफ टेबल रखा हुआ है दो कुर्सियां रखी हुई है।

बहुत सारी साड़ियां पैंट शर्ट बाहर की तरफ टंगे हुए हैं।

इसके ऊपर बहौत सारे बैलून लगे हुए हैं झंडे लगे हुए हैं आगे की तरफ से एक छोटा बच्चा साइकिल से जा रहा है।

इस तस्वीर में हमें छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें कमल के फूल बहोत सारे उगे हुए हैं।

रोड भी दिखाई दे रहा है पानी काले कलर का हो गया है।

इस तस्वीर में हमें कपड़े की दुकान दिख रही है।

यहां पे एक कार आगे की तरफ जा रही है नीचे की तरफ नदी दिखाई दे रही है।

आगे की तरफ टेबल रखा हुआ है दीवाल में बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं नीचे टाइल लगा है वाइट कलर का।

एक आदमी नीचे बैठा हुआ है व्हाइट कलर की बाल्टी दिख रही है।

थोड़ी दूर पे वाइट कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है।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

और दीवालो पर बहुत सारे फ्रेम लगे हुए हैं आगे की तरफ शीशे का गेट बना हुआ है।

मेट रखा हुआ नीचे और अंदर की तरफ सजावटे हो रखी है।

और बहोत सारे घर दिख रहे हैं।

पानी की तरफ छोटे छोटे झाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हीरो होंडा रिपेयर स्टोर दिख रहा है।

जहां पे आगे की तरफ एक बुलेट जैसी बाइक खड़ी है जिसके सारे पुर्जे निकले हुए हैं।

दो लेडिज डॉक्टर है जिसने चश्मा लगा रखा है।